साइड में इसके कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यह लीक से चले आ रहा है जहां की एक रास्ता है।

यहां सामने लकड़ी की एक सीढ़ी बनाई गई है उस सीढ़ी पर एक व्यक्ति सिर पे गिट्टी लेकर मसाला लेकर चढ़ रहा है।

और एक ग्राहक सब्जी खरीदने के लिए आया है।